टेज नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

इस पिक्चर में हमें प्लेट में--

देखने में हमे ये बिरयानी लग--

यहां पर हमे वॉल्ट बोर्ड पर--

दवाइयां नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें गेट नजर आ रहे--

दिखाई दे रहा हैं।

इज पिक्चर में हमें--

हमें एक जिम दिखाई दे रही है।